बहुत-बहुत मंद मंदिर है बहुत ही अच्छा अच्छा है एक लेडिस है औरत है बहुत ही अच्छा पेड़ है |

किस का शादी लगा हुआ है जैसे बहुत ही अच्छे से पार्टी लगा हुआ है बहुत ही सारा लाइट लगा हुआ है |

बहुत मजा आ रहा है | बहुत ही अच्छा लड़की खड़ा हुआ खड़ा है ।